सामने यहां पे लकड़ियां मारे गए हैं।

सामने एक टू व्हीलर गाड़ी थैले लड़कियां लकड़ी की सीढ़ी दिख रही है।

दिख रहे हैं ऊपर ये बाजू में यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े --

यहाँ पे बहोत सारे चेस और --

ये एक यहाँ पे बड़ी सी --

फोकस भी दिख रहे हैं और इन पे यहाँ पे छोटे छोटे फुग्गे लगाए गए हैं।

और यहाँ पानी पूरा ग्रीन कलर का है यहाँ पे सूखा हुआ झाड़ भी है।

साइकिलां है और छोटे छोटे यहाँ पे --

पेट्रोल पंप दिख रहा है यहां पे अंदर डस्टबिन फायर एक्टिमिशन सिलेंडर --

और यहाँ लाइट के फोकस खंबे भी है।

लाइट के खंबे भी यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े झाड़ा --

और यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ा भी बहुत सारे दिख रहे हैं।

यहां पे डस्टबिन पौधे भी लगाए गए हैं।

राज मेहंदी आर्ट के यहां पे बोर्ड्स रखे बोर्ड लगे हुए है।

फैन दिख रहे हैं बहोत सारे वहां पे--

और पीछे वहां पे डायपर्स भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे बाहेर एक अदमी दिख रहा हैं।

सामान को रखा गया है यहां पे फ़तरे भी है।

और यहांँ पे बड़े बड़े बुटियों में बहुत सारे यहांँ पे --